इसके दीवार पर पोस्टर लगे हुए है और निचे एक सोफा लगा है सोफ़े के बगल मे एक टेबल रखी हुई है।

यहाँ एक भैंस बंधी हुई है इसके पास एक उसका बछडा बंधा हुआ है भैंस सामने की और देख रही है तथा बछड़ा उससे विपरित दिशा मे देख रहा--

राधा जी इनके पास खड़ी हुई है राधा जी का एक हाथ श्रीक़ृष्ण पे हाथ पर रखा हुआ है इनके प्रतिमा के पीछे एक मोर की प्रतिमा बनी हुई है।

या एक ग्रोस ग्रोसरी की शॉप है जहा विभिन्न पार्कर के आइटम टंगे हुए है।

यहा एक व्यक्ति चश्मा पहने हुए नीचे की और देख रहा है इसके बगल मे एक तस्वीर है जिसमे एक व्यक्ति उस औरत का हाथ--

इस स्टेज पर स्पीकर चेअर व बेनर लगा हुआ है और बेनर के ऊपर फ्रेशर लिखा है।

एक डॉक्टर के गले मे थर्माकॉपल लटका हुआ--